एक सड़क पे एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है।

एक आदमी ब्लैक कलर के शर्ट पहना हुआ दिख रहा है।

और काफी सारे सूखे हुए पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

एक बड़े टेबिल को पड़कर एक आदमी खड़ा हुआ है।

डब्बों के अंदर खाने का सामान भी रखा हुआ है।

बाहर पार्किंग में काफी सारी बाइके भी खड़ी हुई है।

रखा हुआ है कोई टूरिस्ट प्लेस ये देखने में लग रहा --

दुकान के बाहर जनता चाय का बैनर भी लगा हुआ है।

दीवारों पे काफी सारी तस्वीरे भी लगी हुई है।

चारों तरफ पेड़ छोटे छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं।

एक बड़ा मैदान इसमें दिख रहा है।

छत की रेलिंग पे झंडे भी लगे हुए हैं।

तस्वीर में देखते हुए दिख रहे है।

एक बड़ा मैदान इसमें दिख रहा है।

एक मंदिर के अंदर काफी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है।